फ्लोर में व्हाइट टाइल्स लगे हुए है।

यह एक ऑफिस जैसा दिख रहा है।

यहां कुल आठ गाड़ियां दिख रही हैं।

इस फोटो में हमें एक फंक्शन जैसा दिख रहा है इस रूम को बहोत सजाया गया है।

इसका वॉल रेड कलर का है।

इसमें बहोत सारे अलग अलग स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं।

पीछे पहाड़ दिख रहे हैं।

ऊपर बादल दिख रहे हैं।

पहाड़ पूरे गछियों से भरा हुआ है।

इसमें एक बोर्ड लगा हुआ है।

इस फोटो में हमें एक पट्ठर का घर दिख रहा है।

इसके आगे बहोत सारे कंक्रीट और पत्थर दिखाई दे रहे हैं।

पीछे बहुत हरा भरा है बहुत सारे पेड़ हैं एक घर भी दिख रहा है।

इस होटल में बहोत लाइटे लगी हुई है।

इसके ऊपर द मीनाकिस लिखा हुआ है।

इस फोटो में हमें एक शादी का फंक्शन दिख रहा है।

बहोत सारी लाइटे भी लगी हुई है।

सभी ने ऑरेंज कलर की शर्ट पहनी है।

यह एक इंसान अपने बाइक में पेट्रोल डाल रहा है।